दूसरा नंबर की रो में कुछ छोटे-छोटे प्रोडक् रखे हैं जीम-जो खोखे दिख रहे हैं। तीसरे नंबर पर भी कुछ प्रोडक् रखे गए हैं।

सामने भी एक पेड़ लगा वा है इसके जस्ट साइड में एक खम्भा लगा हुआ है और सामने की तरफ हरा ग्राउंड दिख रहा है।

जो कि रेड कलर से दिखाइ दे रही है। इसी जिम में न सामने की तरफ एक चेयर रखी हुई है। वो चेयर खाली है और उस चेयर के पास में कुछ ब्लू कलर का कुछ पेड रखा है।

सबसे ऊपर में येल्लो कलर का प्रोडक्ट रखा हुआ है। बीच वाले में रेड कलर का प्रोडक्ट रखा है। सबसे तीसरी रो में ये बले ब्लू कलर का प्रोडक्ट रखा हुआ है।

इस इमेज में एक बड़ी सी मूर्ति नजर आ रही हैं। जो एक देवता की है और उनके साइड मे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

ए लड़का और एक लड़की एक साथ में जा रहे हैं जोकि सफ़ेद कलर की कोट पहने हुए हैं और उनके ग हाथ में बेग लटका हुआ है और यहाँ पर वो साइड में अ यहाँ पर वाइट कलर में बाउंड्री बनाई गई है।

इस इमेज में एक जिम की फोटो नजर आ रही है जिसमें जिम में येलो कलर से पेंट किया गया है और किसके सामने कॉलम दिख रहा है जो रेड कलर --

गेट छोटा सा जाली का लगा हुआ है जो काले कलर का दिख रहा है। उसी के पास दो से तीन कॉलम ब्लैक कलर में कंगा खड़े हुए हैं और साईड एक कार खड़ी --